इस तस्वीर म जो बैंक का एटीएम है वो है जोलोन डिस्टिक्ट --

दो चकया बाहन और चार चकया बाहन भी है। इस तस्वीर में एक कार है।

इस तस्वीर मे एक आदमी खडा हुआ है। इस तस्वीर मे एक छोटा सा दुकान भी दिखाई दे रही है।

इस तस्वीर में बहोत सारे लोग दिखाई दे रहे है। इस तस्वीर में एक --